शोरूम के अंदर बोहोत से मोबाइलस के पोस्टर लगे हुए हैं।

अ- एक पोल भी लगा हुआ है।

ये एक पिक्चर है जोकि एक पार्लर के अंदर की है।

इन दुकानों के पीछे बहोत सी दुकाने भी हैं।

उस ए.टी.एम के बाहर एक बाइक खड़ी है और एक छतरी भी लगी हुई है |

ये एक चर्च है।

यहां पे चार लड़किया खड़ी है।

ये एक फोटो है जो कि एक अ एडवेंचर कैंप की है।

और ये नदी के बिल्कुल नदी के ऊपर ही है।

ये एक फोटो है जोकि गार्डन के बीच में से जाने वाले राश्ते की है जहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है।

जो कि ध्यान की समाधि मे लग रहे है।

जहां पे कैरियर पावर वी टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स --